और कुछ टिफिन भी रखे हुए हैं और कुछ डिब्बे भी है।

और ढोलक भी रखी हुई है और बैग भी है।

ये एक होटल है और इसमें कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

ये एक सड़क है सड़क पे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

कुछ कमरे बने हुए हैं कमरो में खिड़कियां भी है।

और इन कार्ड में सफेद रंग के कार्ड है।

और इन आदमियों के चेहरे छुपे हुए हैं।

और आसपास कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भीं है।

यह एक रूम है और इसमें कुछ लकड़ी के पावे रखे हुए हैं।

आदमी के चेहरे छुपे हुए हैं।

ये एक सड़क है और सड़क के ऊपर लाइट भी लगी हुई है।

और दूसरी साइड में कुछ मकान भी है और उप मकान में खिड़कियां भी है।

और बोतल भी है और ऊपर कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

ये दुकान है और इसमें कुछ आदमी भी है।

बाहर सड़क पर कुछ बाइके भी है और एक आदमी भी है।

इसके साइड में कुछ रंग बिरंगी फूलों के फोटो भी है।

और उससे पहले साइड में कुछ बिल्डिंग बनी हुई है।

और उससे परली साइड में कुछ हरे भरे पेड़ पौधे ख भी हैं।

और उसके ऊपर कुछ माला भी है और कुछ लाइटे भी है।

बहोत सारा पानी बह रहा है और साइड में कट्टे भी पड़े हुए हैं।

और ऊपर लोहे की सीट भी है और उस साइड में कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं।